यहाँ पे हवन का भी रखा हुआ है बिच में कलश भी रखा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारा टांगा हुआ हैं ऊपर से फ्लॉवर के टाइप में बना-बना के टांगा हुआ हैं।

ग्राउंड में कुछ कुछ घर भी बने हुए है।